इस तस्वीर में दिखाया गया है कि एक मॉल जो मोर हैप्पी मार्ट पर नाम पर है। बगल में एक बिल्डिंग बन रही है।